यह देखिये की हरे -भरे रंग मे बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा बहुत धुंधला भी छाया है ये कितना सुन्दर लग रहा है ऊपर मंदिर --